और यहां पे एक साइकिल पे और एक आदमी आ रहा है।

और ऊपर कुछ पंखे भी लगे हैं और कुछ लाइट भी लगी हैं।

यहां पे लाल कलर के कुछ सोफे पड़े हुए हैं।

यहां पे बहोत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है।

और नीचे की सीट पड़ी है।

यहां पे रंग मरंगे कुछ साबुन रखे हुए हैं।

और इसके नीचे कुछ मकान से भी बने हुए हैं।

और उसके पास एक कुर्सी रखी हुई हैं और एक बाइक खड़ी है।

यह एक मछली पालन की दुकान है।

यहां पे नीचे हरे कलर की मैट बिछी हुई है।

और यहां पर इसके बाहर एक बाइक खड़ी है।

और एक बाइक खड़ी है और उसके पास एक आदमी खड़ा है।

यहां पे नीचे हरे कलर की मैट बिछी हुई है।